एक्सरसाइज की बहुत सारी मशीन रखी हुई है कुछ लोग दिख रहे है और इस हॉल के बीच में एक बालकनी दिख रही है।

चित्र में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है इस दुकान के शोकेस में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं और इस शोकेस के ऊपर --

कुछ अम्म ब्रेड के पैकेट रखे हुए है एक --

और घर के वेट गेट की सामने की दीवार के ऊपर लोहे की जाली लगी है और सामने सड़क पर एक ई-रिक्शा खड़ा है।

और इसमें बैंक्वेट हॉल है फैमिली रेस्टोरेंट है।

मैदान में ट्रैक्टर के पास से कुछ लोग जाते हुए दिख रहें हैं और मैदान के एक किनारे पर दो लोग कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहें हैं।

और इस झूले पर कुछ लोग झूल रहे हैं एक बहुत बड़ा हिंडोला वाला झूला लगा हुआ है और कुछ लोग दिख रहे हैं साइकिल दिख रही है।